चारो ओर चेन से सजाई हुई है।

आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

यहां पर बहोत सारे झूले लगे हुए हैं।

सामने आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरे भरे हैं।

सामने एक सादे रंग का ट्रक भी है ।

दुकान का सीढ़ी का रंग काला है।

पीछे लाल रंग का बिल्डिंग है।

पीछे दीवाल का रंग सफेद है।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

आसमान का रंग नीला है।

सामने में बहुत सारे तार लटकाए हुए हैं।

नीचे फर्श का रंग सादा है।

गेट का रंग लाल और हरा है ।

एक काले रंग का रोड भी है।

यह दृश्य एक पोल्ट्री फार्म का है जहां पर बहुत सारे मुर्गे रखे हुए हैं।

रिसेप्शन का टेबल का रंग काला है।

एक कुर्सी है एक कंप्यूटर है एक फ्रिज है।

एक चार्जर भी दिख रहा है।

ये दृश्य एक कमरा का है।